लग रहा है जिसकी छत व्हाइट कलर की है और दीवार नजर आ रही है जो क्रीम कलर और व्हाइट कलर से रंगी हुई है ऊपर मे लाइट्स लगे हुए है और नीचे फ्लोरिंग दिख रही है जो टाइल्स की है जो व्हाइट कलर और ब्राउन कलर की है।

कुछ खेती का नज़ारा दिख रहा है जहाँ पर पानी मे ये ये लड़का उतरा हुआ है औ वहाँ बाम्बू है ।

बाइक भी ब्लैक कलर की है और वहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे है जो हरे हरे है और इलेक्ट्रिक वायर्स नजर आ रहे है।

डिवाइडर दिख रहा है। जो ब्लैक कलर और येल्लो कलर से रंगा हुआ है। सामने कुछ पेड़ नजर आ रहे है जो हरे है और आसमान भी साफ है।

यहाँ पर एक शाप दिखाई दे रही है इसमें शर्ट्स हैं टी-शर्ट्स हैं एस्पेशलि वहाँ पर जो वाइट कलर में हैं ब्लू कलर में हैं डार्क ब्लू कलर में हैं और रेड कलर में हैं।

वो दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारे बुक्स वहाँ नजर आ रहे हैं और वहाँ पर लाइट्स लगी हुई है।